और यहां पर कोई नहीं दिख रहा सिर्फ लाईटें चालू है यहां पर रात का टाइम लग रहा है।

ये एक जिम दिख रहा है जहां पर दो लेडीज और एक सामने जेंट्स दिख रहा है दो लेडीज नीचे बैठकर एक्सेस कर रहे हैं।

सामान दिखा बहुत सारा और एक जेंट्स कुर्सी पे बैठा हुआ सामने।

दिख रहा सामने बोर्ड के सामने शोरूम मे दिख रहा है और अंदर बहोत सारे लोग बाहर आ र--

उपर लाइटिंग दिख रही है और बैंक वाले भी दिख रहे है और हाथ में गुलदस्ते भी दिख र--

जहा पर आजु बाज़ू --

ये किसी का रूम दिख रहा है। अर रूम में एक बेड दिख रहा। हर बेड के ऊपर एक गद्दा और दो तकिए दिख रहें--

दो तीन कुर्सिये दिख रहीं है बैठने के लिए डोर पे दिख रहा है।

एक बच्चा कोई ड्राइंग कर रहा है जो काफी बार ड्राइंग।

ये किसी का रूम दिख रहा है यहां पर बहुत सारे जो इनाम में जीते गए ट्रॉफी दिख रहे।

ये कोई डैम लग रहा है जहां पर डैम के बाजू डैम के ऊपर से पानी आ रहा है और पानी भरा हुआ दिख रहा।

बहुत पुराना दिख रहा है और मंज़िल बहुत कमज़ोर दिख रही है दीवारे।

ये कोई चौक लग रहा है आज बाजू बहुत सारे लोग दिख रहे हैं एक दुकान भी दिख रहे हैं।

तीनों तीन मिस्त्री नीचे काम कर रहे हैं बाजू में कुर्सियां दिख रहा है और एक कु कुर्सी--

आज बाजू दो तीन झंडे भी दिख रहे हैं लगाए गए और बाहर।

लगता है कि जैसे मंत्री पूजा हो रही है और लाइट चली गई है और कुछ मोमबत्तियां जलाए गए--

बहोत सारे मोबाइल्स दिख रहा है यहां पर और मंदिर की फोटो भी रखी गई है।

अंदर एक आदमी जा रहा है और दो तीन लोग दिख रहे हैं आजू-बाजू पत्थर भी दिख रहे हैं और एक पत्थर का इलाका दिख रहा है।

ये छोटा सा घर दिख रहा है जहां पर दीवारों पर बहोत सारे पोस्टर लगे लगाए गए हैं बहोत सारे मे फोटो दिख रहें--